पेपर दिखाई दे रहा है कैलेंडर दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा है रजिस्टर दिखाई दे रहा है पेन दिखाई दे रहा है।

बोरोलिन के डब्बे रखे हुए हैं विम -बार रखा हुआ है सामने में एक टेबलेट रखा हुआ है सामने में एक कैल्कुलेटर रखा हुआ है सैनिटाइजर रखा हुआ है।

बहुत सारे विक्स की गोलियां रखा हुआ सामने में बहुत सारे डब्बे रखा हुआ है ओ_आर_एस के डब्बा दिखाई दे रहा है सामने में खिड़की दिखाई दे रहा है जो कांच का है।

यहाँ पर मुझे एक एस_बी_आई का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जो सामने में बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एस_बी_आई का लोगो बना हुआ है एस_बी_आई लिखा हुआ है ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यहाँ पे लाइन से बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जो बहुत बड़े हैं घर में बहुत सारे छत दिखाई दे रहे हैं एल्वेस्टर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे सामने में एक बड़ा-सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा हैजो पिकनिक एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें सामने में एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक--

सामने में एक शीशा दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है एक पंखा दिखाई दे रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है पोस्टर दिखाई दे रहा है।

एक व्हाइट कलर का बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैजिसमें बहुत सारे लाइन से खिड़कियाँ दिखाई दे रही है दरवाजा दिखाई दे रहा है छत दिखाई दे रहा है।

एक और वाइट कलर का घर दिखाई दे जिसके सामने एक व्हाइट कलर का पंखा लटका हुआ है लाइट दिखाई दे रहा है छत दिखाई दे रहा है।

यहां पे सामने में एक ब्लॉगो दिखाई दे रहा सामने में बोर्ड दिखाई दे रहा जिसमें इंडियन ऑयल लिखा हुआ सामने में उसके नीचे ट्रेन ट्रक अंडर --

लंबे लंबे दीवाल दिखाई दे रहा है स्कूल बोर्ड दिखाई दे रहा है सामने में बच्चे दिखाई दे रहे है।